ये एक जिम का पिक्चर नजर आ रहा है जिसमें एक जिम एक्स एक्सेसरीज मशीन रखी हुई है जिसमें काफी लोग वर्कआउट करते हुए नजर आ रहै हैं ग्रीन कलर --

और ये येल्लो कलर का ऑटो और बाइक कई सारे लोग पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं बारिश जैसा मौसम हो रहा है।

ये एक हाल दिखाई दे रहा है। जिसमे कारपेंटर भी दिखाई दे रहा है। जो की पैंट कर रहा हैं।

ये एक पूरा आज जंगल की इमेज लग रही है जिसमे एक पुराने जमाने की स्टेप्स नज़र आ रही है।

ये एक ग्रूमिंग क्लास नजर आ रही है जिसमें अ तीन वुमन योगा करती हुई नज़र आ रही है।

ये एक अ बडा सा क्लास रूम नजर आ रहा है जिसमे दो विंडो और एक ब्लू कलर का नोटिस बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमे --

ऑटो दिखाई दे रहे है पर्सन चलते हुए नजर आ रहे है बड़े बड़े पेड भी नजर आ रहे है।